एक जेंट्स दिखाई दे रहे है एक घड़ी दिखाई दे रही है और कुछ पोस्टर भी दिखाई दे रहे दीवाल पे और जमीन भी दिखाई --

भगवा कलर है वाइट कलर है एंड बादल दिखाई दे रहे है इधर सिर्फ थोड़े-थोड़े पेड़ झाड़ दिखाई दे रहे --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

यहां पे ग्रीन में कलर में कुछ भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक मैदान दिखाई दे रहा है एक मैदान में डौगी दिखाई दे रहा है बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है बिल्डिंग में से बहोत सारे विंडो दिखाई दे रही है।